यहां पर पिंक कलर में एक कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है।

यहां के दीवार पर बहुत सारे पिक्चर्स भी लगे हुए हैं।

यहां पर रंगीन फुल लटकाए हुए हैं।

बहुत सारे रंगीन फूल है।

यहां पर एक टेडी बेयर है जिसका कलर येलो और रेड है।

यहां नीचे दो हैमर रखा हुआ है।

यहां पर वाल व्हाइट कलर का है।

यहां में पशु आहार ब्ल्यू कलर में लिख हुआ है।

यहां का वाल क्रीम कलर का है।

चेक किया हुआ और एक ब्राउन कलर का कार्टून रखा हुआ है।

यहां पर छोटे बड़े हरियाली पेड़ उगे हुए हैं।

यहां पर तीन चेयर रखा हुआ है।

यहा पीछे की और एक घर है जिसका कलर सफेद और लाल है।

यहां पीछे की ओर बहुत सारा ग्रीन कलर का पहार है।

बहुत सारे खिड़कियां है जो कि शीशे का बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बच्चों ने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

यहां पर एक आदमी ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

यहां बहुत सारे हरियाली पेड़ बड़ा हुआ है।

यहां पर छे लोग खड़े होते हुए दिख रहा है।

यहां एक बच्चे ने ब्राउन कलर का फ्रॉक पहना हुआ है।

यहां पर एक पतला रस्ता है जिसमें छोटे छोटे स्टेयर्स भी बना हुआ है।

यहां पर एक आदमी ने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यहां दूर की ओर बहोत सारे रेड और वाइट कलर के बिल्डिंग्स है।